एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है इसके सामने एक रस्ता भी दिखाई दे --

वह उस मूर्ति के आगे एक लड्डू गोपाल रखे हुए --

यह उसके आगे अह साइड में नमकीन के पैकेट्स दिखाई दे रहे हैं दुकान के --

सामने दी गयी तस्वीर में एक दुकान दिखाई दे रही है जिसपर --

सामने दी गई तस्वीर में एक स्टेशनरी दिखाई दे रही है।

बहुत से कपड़े रखे हुए हैं वह ऊपर की तरफ बहुत से लाइटें लगी हुई है।

सामने हदी लगाई तस्वीर में --